कुछ लोग लाइन में खड़े हुए हैं।

जैसे कि मैं देख पा रहा हूं सामने मुझे एक दुकान दिखाई दे रही है और दुकान के सामने कुछ गाड़ियां भी--

यहां पे एक टंकी रखी हुई है कुछ पेड़ भी लगे हुए हैं।

मैं देख पा रहा हूं कि यह शायद एक सरकारी ऑफिस है।

यहां पे कुछ लोग बैठे हुए हैं और कुछ लोग खड़े हुए हैं।

और कुछ लोहे की चीज साइट पर रखी हुई में देख पा रहा हूं कि यहां पर कुछ दरवाजे रखे हुए--

जैसे कि मैं देख पा रहा हूं।

कुछ टेबल्स दिखाई दे रहीं हैं और कुछ--

जैसे कि मैं सामने देख पा रहा हूं वह आदमी कुछ--

और कुछ प्लास्टिक की चीज रखी हुई है। क्या है? कि ये हार्ड वर्कशॉप है।

नहीं दिखाई दे रहा यहां पे कुछ कपड़े टंगे हुई है क्या एक कपड़ों की शॉप है।

और सामने मुझे कुछ बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है और बारिश है। कुछ पेड पौधे दिखाई दे रहे हैं। यह कोई गैरिश है क्या?

शायद ये एक मेडिकल शॉप दिखाई दे रही है मुझे क्या ये मेडिकल शॉप है?